कुछ हरी हरी छोटी छोटी घास हैं ऊपर की तरफ काफी चट्टानें चट्टानों--

इसमें दो पहिया आगे से दिखाई पड़ रही है एक आदमी खड़ा हुआ है जिसने मु--

लगा रखा है और यहां पे काफ़ी सारे पेड़ पौधे भी दिखाई--

ये एक मछली की दुकान है जिसमें दो तीन आदमी दिखाई पड़े जिन्होंने बहोत सारा सामान--

यह एक गोडाउन लग रहा है जिसमे काफी सारी मशीनें बहोत सारे पिलर और बहोत सारे खंभे र--

यह एक इमारत बनी हुई है इमारत के अंदर सिर्फ दो आदमी बैठे हुए दिखाई पड़ रहे हैं।

ऊपर की तरफ काफी सारे बेड रखे हुए हैं ये काफी देखने में सुंदर लग रहे--

ये एक रूम है जिसमें बहोत सारे आदमी और एक लेडीज खड़ी हुई--

काउंटर पे पर्स और बैग रखे हुए हैं मोबाइल रखा हो--

काउंटर पे एक लैपटॉप रखा हुआ ऊपर की तरफ काफी सारे पोस्टर लगे हुए हैं।

एक औरत नारंगी रंग की साड़ी पहने हुए इधर को आती हुई दिख रही है एक औरत उधर को जाती हुई दिख--

ये रोड के किनारे एक खंबा दिखाई पड़ रहा है। एक अ डस्टबिन रखी हुई एक गाड़ी खड़ी हुई है।

ये एक ईस्लाइड वाला स्विमिंग पूल दिख रहा है जिसमें काफी सारे आदमी --

दो तीन बाइक खड़ी हुई हैं जो लाल रंग की है एक का शीशा चमक रहा है।

ये एक फैक्ट्री लग रही है जिसमें नीले रंग का ट्रांसफार्मर रखा हुआ।

यह एक दीवाल है दीवाल के ऊपर लिखा हुआ है अल्ट्राटेक उसके आगे एक पोस्टर लगा हुआ है जिसपे लिखा हुआ जय श्री बूढे बाबा सर--

कलर के हैं कुछ येलो कलर के हैं कुछ व्हाइट और ब्राउन कलर के भी है।

जो काफी देखने में अजीब लग रही है और कुछ हरी भरी घास भी आसपास लगी हुई है।

और कुछ बड़े बड़े पेड़ पौधे भी लगे हुए काफी दूरी पर देखने पर एक दो घर दिखाई पड़ रहे--

और पास में वो डी जे वगैरा रखे हुए हैं ऊपर की तरफ नीले रंग से।

ये एक मजार दिख रही है जो लाल रंग से पुती हुई है और कुछ सफेद रंग से भी पुती हुई है।

पीछे की तरफ एक स्कूल बना हुआ है और दो तीन पेड़ भी दिखाई पड़ रहे है।